रोड में एक बुलडोजर खड़ा हुआ है।

और ओ एक उसके हाथ देख रहे हैं दो।

जोकि सब व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हैं और उन्होंने ब्लैक कलर की टाई लगाई --

जो की प्लास्टिक के है और प्लास्टिक के सामान मक्खा और भी बहोत सारे सामान है।

जिम में एक व्यक्ति है जो रेड कलर की टी शर्ट पहना हुआ है वाइट कलर की शूज और जींस पहना हुआ है।

वो की बिजली विभाग में आते हैं और ये ट्रांसफार्मम कहलाते है।

यहां पर एक दुकान है और वो दुकान गाड़ी की लग रही है और गाड़ी की दुकान जो है--

और गेम में गोला गोला बना हुआ है।